तरबूज भी दिखाई दे रही है मुझे--

इस तस्वीर पर बहुत सारे मजदूर हैं।

कुछ मजदूर अपने माथे पर सामान बुक के चल रहे हैं।

और एक इंसान लैपटॉप चला रहा है।

और दो बस नजर आ रहे है।

बहुत बड़ा बड़ा मशीन भी रखे हुए हैं।

कुछ मुर्गियां दाने चुग रहें हैं।

इस बैंक पर बैठने के लिए बहुत सारा चेयर रखा हुआ है।

कुछ लोग लिख भी रहे हैं।

सामने पर एक बड़ा सा ऐ_सी और पंखा भी है।

जिस पर बहुत सारे इंसान भी है।

उस घर के ऊपर एम स्क्वेयर फिटनेस क्लब लिखा गया है और बहुत सारे मोटरसाइकिल पार्क किए गए हैं।

मुझे एक ब्लू बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें दुर्गा होटल लिखा हुआ है और इस बिल्डिंग के सबसे नीचे पर वाइन शॉप भी--